उस ठेले पे काफी सारे फ्रूट रखे हुए हैं मोसम्मी अनारस ।

कुछ बने हुए हैं जो कि कोट में लगाकर लोग आपने घरो को दुकानों को आदि को --

जिस पे बच्चे खेलते है लोग यहां अपने बच्चों को घुमाने के लिए लेकर आते हैं।

इसी में एक लड़का एक्सरसाइज करने के बाद --

जोड़े चुन्नियाँ आदि टंगी हुई है यहां पे टिश्यू पेपर रासन पानी आदि हर प्रकार के --